बहोत सारी कारे खड़ी हैं और ये कोई ऑफिस-ऑफिस है। सामने शीशे का ऑफिस बना हुआ है। लाइट व्वाइट भी लगी हुई हैं और ये फर्श पे कोई टाइल नहीं है सिंपल है और एक आदमी कार के सामने जस्ट सामने खड़े हुए है। आप देख लीजिये।

और डी जे सेट है ये और ऊपर वो लाइट मिक्सिंग लाइट जो होती है कई तरह की जलती है वो ऊपर मिक्सिंग लाइट भी लगी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है ये डी जे डीजे सेट इसको बोलते है हम।

बाकि दो लोग बैठे हुए है और इक फ़ोन से बात कर रहे है। एक भइया ने अ ट्रैंगल लाइक अ टी_शर्ट पहना हुआ है दूसरे ने ब्लैक लोअर और ग्रीन टी_शर्ट में खड़े होकर सामान कूछ खरीद रहे हैं।

और एक मिथिला बुक दीपू डिपो करके दुकान है आप भी देख सकते हो मिथिला लिखा हुआ है आगे यही बोलना है न भई हर फोटो में।

और एको वहाँ पे एक आदमी शायद इस पानी को सेट कर रहा है उ उधर देखो सामने आ यहाँ पे एक चेयर रखी हुई है और पानी प्योर ग्रीन हैं।

ये कोई इंजीनियन् साब है जो ये कोई बेस ए-फ्लीट हो रहा है वहाँ पे ये कुछ देख रहे हैं।

का ग्राउंड है जहाँ पे ये बोहोत बड़े-बड़े स्कूल खुले हुए है तीन चार फाइव वन ट्व थ्री फोर फ्लोर के।

वाइट कलर की पूरी स्कूल है।

और खम्बे के तरह खूब लम्बे लम्बे चार यहाँ पे हमको पोल दिख रहे हैं इस इस पोल के जस्ट फ़्रंट में एसी भी लगी हुई है सीसे का पूरा ऊपर का बेस है।

पीठ पे एक बैग टाँगे हुए है। उनके आगे भी एक आदमी पीठ पे बैग टांगा हुआ है।

बहोत बड़ी बिल्डिंग लगी है व्हाइट कलर की गेरुआ कलर की येलो कलर की सफेद कलर की चार कलर की बिल्डिंग है।

और ये पोलीथिन पे बिछाके मछलियों को रखकर के बेच रहे हैं।

और गमला में बहूत सारा फूल रखा गया है। गमला में फूल है।

स्टेच्यू है आ खूब बगलिया में पेड़ सुन्दर- सुन्दर यहाँ पे हैं।

यह दिविजन ऑफ़ स्कूल का बीच के कैंपस का फोटो जो म्म इसी के स्कूल में पढ़ाई करते थे।

और ये काफी सूंदर नज़ारा है सबको अपने बगीचे में पानी देनी चाहिए और ये पार्क का है बहुत खूबसूरत छोटे-छोटे --

ये कोई विद्यालय या फिर कोई सरकारी या कोई गोरमेंटेड टाइप का गोरमेंटेड जगह है जहाँ पर ये सब है और ये देखो पिंक कलर का दिख रहा है। ये शटर लगी हुई है। गोरमेंट का ही कुछ है।